और अपना पेट पालन कर रहा हैं असली बढियां हैं।

लड़के लड़कियां जिम करने आते होंगे क्योंकि यहाँ सभी जिम की सामग्री उपलब्ध है।

और शायद यहाँ पे एटीएम लिखा है फिर यहाँ से एटीएम --

यहाँ तीन चार मंजिला है यहाँ यह स शासकीय कार्य हैं यहाँ पे --

लोग एन्जॉय कर रहै है से साथ में है किसी पार्टी का --

सब तरफ हरयाली दिखाई दे रहा है और दो-चार पेड़े दिखाई दे रही है और--

यहाँ सैलून का दुकान है सामने में दो तीन --

बहुत ज्यादा पेड़ दिखाई दे रहा है यह किसी जंगल का या--